के बाहर बहुत सारी रंग बिरंगी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

बहुत सारे पिलर भी खड़े हुए हैं।

हमें इस फोटो में रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

बच्चे खेल रहे हैं और झूला भी झूल रहे हैं।

हमें इस फोटो में जिम हॉल दिख रहा है।

बाहर बहुत सारे पेड़ लाइटें लगी हुई है।

बहोत सारी बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

इस फोटो में एक लड़का जिम में वर्कआउट करता हुआ दिखाया गया है।

अंदर बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।